दिखता है। इसके बगल में बहुत सारे घोर है घर है। रात होने वाला है जिस घर में यहां पर लाइट जलाया गया है जो लाइट से बहुत अच्छी दिक् --

इसके नीचे में बहुत सारे घास एक पेड़ है और ईटे के द्वारा इस बाउंड्री के द्वारा इन्हें घेरा गया है ।

व्यक्ति है जो टोपी पहना हुआ है। ये एक चश्मा भी पहना हुआ है।

क्या लिखा गया है हाजीपुर हाजीपुर जंक्शन लिखा गया जो स्टेशन है यहाँ पे ट्रेने रूकती है इस जंक्शन पे इसलिए इस यहाँ पे --